एक छोटा-सा पेर का पेड़ है बहोत सारे बाइकस है।

ये एक पानी का जगह है बहुत सारे पत्थर है कुछ छोटे पत्थर है।

बड़ा सा एक पेड़ है। सामने छोटे-छोटे से पौधे लगे हुए हैं। एक बड़ा सा गेट है और ऊपर नील आसमान है।

वाल्स जो हैं वो डेकोर किए गए हैं। कुछ बॉटल्स के सेट किए गए हैं काउंटर भी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है।

रेस्टोरेंट है टेबल अ सेट किया गया है चेयर्स है वॉटर बॉटल्स है ग्लास है एक बड़ा सा टी.वी. है।

हरे रंग की एक ग्राउन्ड है उसके पीछे बड़ा सा--

इस आ साइड मे छोटे-छोटे कार्स है।